इस तस्वीर में हमे एक अ बनता हुआ कुछ--

और एक अः हरे रंग की टंकी खड़ी हुई रखी हुई है और साइकिल एक खड़ी हुई नज़र आ रही है।

हमें बच्चों के खेलने का प्ले एरिया नजर आ रहा है इस प्ले एरिए में बहुत सारे बच्चों के खेलने के गेम्स रखे हुए हैं यहां बच्चे--

और ये काफी कलर फुल रंग बी रंगी मशीने है जिनसे बच्चे खेलते है।

और दूर खड़े हुए हमें दो तीन आदमी और नजर आ रहे हैं।

अ एक और बस है हरी अ जो दूर खड़ी हुई--

इस तस्वीर में हमे गार्डन नजर आ रहा है जिसमे एक बेंच लगी हुई है एक शेट के निचे--

और काफी दूर भी हमे और भी बेंचे नज़र आरी है और बड़े बड़े पेड़ लगे हुए --

और बिच में एक अः कुआ बना हुआ है लोहे का गेट लगा हुआ एक--

इस तस्वीर में हमे एक मकान बनता हुआ दिखाई दे रहा है जिसमे पिलर खड़े है होने-हो रहे है।

एक बड़ा सा स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है जिसमे नीला नीला पानी अः इसका रंग दिखाई दे रहा है पानी का --

और काच के अ गेट के बाहर भी लोग खड़े हुए है एक महिला खड़ी हुई है।

और एक अ बो दीवार पर--

अ लोग चलते फिरते नज़र आ रहे हैं अ दो महिलाएं खड़े होके आपस में बातें कर रही हैं एक ने हरा रंग का सूट पहना है एक ने सफेद--

इस तस्वीर में हमे लाल रंग की एक बिल्डिंग नज़र आरही है बहोत बड़ी बिल्डिंग है।

और उसके निचे हमे खड़ी हुई गाड़िया नज़र आरही है बस खड़ी है पिले रंग की--

इसमें हमे विद्यार्थी अः लिखते हुए और बैठे हुए कुर्सी टेबल पर नज़र आरहे है।

और ये सारे अ बेठे हुए नज़र आ रहे है।

तो और एक आदमी तोड़ तोड़ कर रख रहा है और बाकि सब भी औरत और आदमी हमे नज़र आरहे है।

बड़े पेड़ भी लगे हुए है और चारो तरफ छोटे पेर भी पेड़ भी लगे --

एक बुक की शॉप है बुक की शॉप में हमें तीन लड़के और एक --

सामने पिरामिट लिखा हुआ है बोर्ड पर और दो आदमी दिखाई देरे है।

स्कूल की बच्चियाँ स्कूल यूनिफार्म में दिखाई दे रही है उपर स्कूल का बोर्ड लगा है।

और एक कार है सफेद रंग की और सडक पर और भी गाडिया है जो दिखाई दे रही है आती जाती--

और उसके निचे सुपर मार्केट की शॉप है।

एक पेट्रोल पम्प दिखाई देरा है हमे जिस पर कारे खड़ी हुई है।

ये हमे एक बड़ा सा मंदिर नज़र आरहा है जहा भगवान की तस्वीरें लगे है भगवान् की मुर्तिया--

इस तस्वीर में हमे बुकशॉप नज़र आरही है बहोत सारी कॉपी किताबे रखी हुई है।

और दूकान के बाहर एक बच्चा खड़ा हुआ नज़र आरा है।

इस तस्वीर में एक आदमी हमें नज़र आ रहा है जिसने पर्पल रंग की शर्ट पहनी है और गले में रुमाल बाँधा हुआ है और उसके पीछे--

होटल कृसेंट लिखा हुआ है और एक बोर्ड पर एक नीले रंग के बोर्ट पर जिओ डिजिटल लाइफ का बोर्ड लगा है।

प्रेक्टिस कर रहे है और इस तरफ पेड़ लगा हुआ है और जहाँ सीढी पर बेठा एक आदमी नजर आ रहा है।

और बहोत बड़ा में ये गार्डन दिखाई दे रहा है जिसमें पेड़ लगे हुए हैं।

और अ कुछ हरी पतियों वाले अ पोधे भी नज़र आ रहे है।

तस्वीर में हमें लाल रंग की बहुत बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिस पर जी_सी_सी_बी_ए फिफ्टी लिखा हुआ है।

एक लाल रंग की बिल्डिंग की खिड़किया नज़र आरही है सफ़ेद पेंट करी हुई और अः--

बिल्डिंग क सफ़ेद कार्नर अः सफ़ेद जो पेंट है वो भी दीवारे नज़र आरही है और बहार--

ये हमें एक सड़क पर चलते हुए लोक गाड़ीआ और बहत सरे फ्रूट्स के ठेले सब्जिआ फ्रूट्स फल फ्रू--

अ सामान रखा हुआ नजर आ रहा है सड़क किनारे जहां पर बहोत सारी भीड़ भाड़ है गाड़ियां खड़ी हुई--

हमें ये प्राकृतिक सौंदर्य का नजारा हमें दिखाई दे रहा है पेड़ हरियाली--

यस बैंक का बोर्ड लगा हुआ है बिल्डिंग के ऊपर और नीचे--